लाल रंग का जूता पहना है दो रास्ता जा रहा है दोनों तरफ से उन दोनों रास्तों के बीच में बोहोत सारे फूल रखे गए हैं और फूलों के बीच में से वो आदमी जा रहा है।

उसके नीचे हमारा एक बड़ा सा घर बनाया गया है जिसमें कि बहुत सारे रास्ते दिए गए हैं जाने के लिए बगल में हमारा एक पार्क जैसा लग रहा है।

पोल को पकड़ा हुआ है पोल का जो कलर है वो हरे जैसा दिख रहा है हेलमेट फेंका हुआ है जो की लाल नजर आ रहा है कुछ कचरे बगल में फेके गए हैं पीछे एक और घर दिख रहा है।